तीन लड़कियां खड़ी हैं एक लड़की ने नीले रंग की--

पहने हुई है और एक महिला सामने की तरफ खड़ी है।